दीवाल दिख रहे हैं हरे घास दिख रहे हैं | रंग बिरंगे पत्ते दिख रहे हैं जामुन का पेड़ दिख रहे हैं ।

सीधा पट्टी बना हुआ है | क्रिकेट मैदान है | विकेट एक एक इंच की दुरी पर लगी हुई है | लम्बी विकेट है | पीले रंग की विकेट है।